ऊपर में सफेद कलर का लाइट जल रहा है।

बहुत सारा लाइट लगा हुआ है।

कागज बहुत सारा रखा हुआ है उसमें चित्र बना हुआ है।

एक आदमी माथा में टोपी पहन के है।

पीछे बहुत सारा छोटा छोटा हरा भरा पौधा लगा हुआ है।

बहुत बड़ा हवाई अड्डा है।

ऊपर में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है जो हरा भरा है।

पीछे बहुत सारा बाइक लगा हुआ है।

यहां बहुत बड़ा बगीचा है।

यहां आगे में एक चबूतरा दिख रहा है।

एक में काला कलर का मशीन में लाल कलर से लिखा हुआ है।

मे एक सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ आदमी है।

कोको कोला मधुवन लिखा हुआ दुकान है।

ऊपर से बहुत सारा पानी भी गिर रहा है।

ऊपर दीवाल में घड़ी लगा हुआ है।

बगल में एक पौधा का पत्ता दिख रहा है जो बहुत हरा भरा है।

बगल में भी एक कुर्सी रखा हुआ हैजो प्लास्टिक का है।

यहां चार खंभा सफेद कलर का दिख रहा है जिसके ऊपर गोल जैसा मुकुट जैसा रखा हुआ है।

यह एक दुकान है यहां बाहर में दो आदमी खड़ा है।

बहुत सारा आदमी है यहां बगल में एक दुकान है यहां पानी का बोतल दिख रहा --